और दुकाने भी दिखाई दे रही है।

रही हैं और दो तीन व्यक्ति दिख--

चित्र में गाड़ियां दिखाई दे रही है।

भारत पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा--

जिसमें काफी सारे घर बने हुए दिखाई दे रहे--

और हरियाली भी दिख रही--

जिसके आसपास पहाड़ भी दिखाई--

कुछ टेंट बने हुए दिखाई दे रहे--

मुझे इस चित्र में नदी दिखाई दे रही हैं।

दे रही है जिसके आस पास पेड़ पौधे--

जिसके आसपास हरियाली भी दिखाई दे रही हैं।

जिसमें एक व्यक्ति जिम कर रहा है।

मुझे इस फोटो में एक ट्रेन दिख--